और पकौड़ी चीनी वगैरह यह सब मिलती है यहां पर लोग--

कार वगैरह ठीक कराते है। काफी लाइटें वगैरह यहाँ पर लागी हुई हैं।

पीछे काफी मार्केटिंग वगैरह लग रही है। दुकाने वगैरह सी बड़ी-बड़ी सी।

काफी लेडिस वगैरह है यहां पे जो पूजा वगैरह कर रही है भगवान जी की। माता जी है ये।

ईरैजर वगैरा कटर वगैरा यहां से प्राप्त होती हैं बच्चों को।

ये लोग गेट ले आके अपने घर में लगवाते हैं जिससे कोई चोर वगैरा चोरी ना करें।

यहाँ पे लोग वगैरा कॉफी चाय इत्यादि चीजें पान करने आते हैं।

काफी अलमारी भी अच्छी बनाई है। पीछे लाइट वगैरह ऊपर जल रही हैं।

सुंदर-सुंदर मोटरसाइकिल प्राप्त हो सकती हैं। आप खरीद सकते हैं।

और लोग वे काफ़ी भीड़ हैं लाइन - लाइन से लोग पैसे निकालते है यहाँ से --

और यहां के जो शॉपर वगैरह जो है --

सुन्दर लग रहा है इसका दृश्य इतना प्यार है।

ऊपर की साइड छत डाला रहे हैं। जिसे लिन्टर कहते हैं।

यहाँ पर आपको शालून का अर्थ मतलब यहाँ पे आप --

काफ़ी अच्छी-अच्छी प्रकार की यहां पे कटिंग होती है। काफ़ी भीड़ लगी है।

इसका मतलब ये अच्छी जगह है। यहां पे बाल आप कटवा सकते --

यह एक थिएटर है। यहां पर जो नई पिक्चरें रिली रिलीज वगैरा होती हैं।

यहाँ पर पिक्चर देखते हुए आप पॉपकॉर्न पेप्सी वगैरह का पान वगैरह करे --

अभी नई पिक्चर रिलीज हुई है वो भी आप इसमें देखिए।

और आपको भी कहीं कहीं दूर-दूर जाना हुआ करे तो आप इन ट्रेनों से जा सकते हैं।

डु किसी बच्चा डूब वगैरा यहाँ --

यह काफी ज्यादातर स्कूल वगैरा मे कोई प्रोग्राम वगेरा हो।

यहाँ पर आप भिन्न-भिन्न प्रकार की अपने बालों की आप कटिंग करा सकते हैं।

काफी अच्छी-अच्छी यहाँ पे कटिंग करते हैं।

काफी अच्छी-अच्छी तरह की लाइटे फिटिंग हुई हैं।

अच्छा लग रहा है अच्छा काफी अच्छा दृश्य है।

पढ़ाई के मामले में ये काफी अच्छी सी शॉप हैं।

ये बहुत ही गंदी चीजे हैं कृपया आप इनका पान नही करें।

इस मंदिर में काफी अच्छा गोल्डन कलर का त्रिशूल लगा है।

हैं लाल कलर की यहां पे झालरें वगैरह हैं।

इसमें आप चीज वगैरा डालेंगे सीमेंट वगैरह।

बच्चों के खेलने की इत्यादि चीजे हैं।